अलग अलग प्रकार की इसमें बहुत सारी सफेद कलर की टाइल्स नजर आ रही है।

तस्वीर मे मुझे बहोत सारे लोग नज़र आ रहे है जो कि कचरा साफ करते हुए दिख रहे है।

पीछे बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रहीं हैं जैसे कुछ ऑटो और पीछे एक ट्रक भी नजर आ रहा हैं।

इस तस्वीर में मुझे दो कप नजर आ रहे है जिनमें कॉफी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

उसके पास में एक पुरुष भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक बड़ा सा घर नज़र आ रहा है।